बॉक्सेस और डी_जे रखे गए हैं।

सारी महिलाएं अलग अलग कलर के वस्त्र पहने हैं।

साइड में बांस भी लगा हुआ है।

बच्चियों के हाथ में कॉपी और स्टोन बॉक्स है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है।

एक इस्कूटी और एक फोर व्हीलर --

यहां पर एक उजला रंग का स्कूटी भी लगा हुआ है।

पेड़ के जड़ों में कलर किया हुआ है।

नीचे में छोटे छोटे घास भी लगी हुई है।

नीचे में टाइल्स लगा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति हैं।

मूर्तियां भी लगी हुई है।

व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है।

गेट के ऊपर एक पोस्टर भी चिपका हुआ है।

यह एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड का दृश्य है।

इस ग्राउंड के बगल में एक बड़ी सी व्हाइट कलर की मंदिर है।

दुकान में आलमीरा बने हुए हैं।

अलमीरा कांच का बना हुआ है।

बाहर का कलर पिंक है।

इस हाल में बहुत सारी चेयर लगी हुई है।

अरे चीनी मिट्टी की वस्तुएं अलग अलग रंग की है।

कमरे में नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

ऊपर नीचे प्लास्तरा किया हुआ है।